और साइड में बहुत ज्यादा घर दिखाई दे रहा है।

और उसका सामने में एक घर जैसा भी दिख रहा है।

अगर वैसे जम के रखा है और पैकेट में और कोई कोई घर में है।

टेबल में वाटर बोतल रखने वाला दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड का सामने में बहोत ज्यादा घर लोग दिख रहा है।

घर का सामने में फ्लावर्स लोग भी दिख रे।

एक ब्लैक कलर के हेयरबैंड भी दिख रहे--

घर का बाहर में एक पानी का पूल दिखाई दे रहा है।

घर में अच्छा से सजाने वाला दिख रहा है।

बहोत ज्यादा पत्थर लोग दिख रहे हैं।

लाइट जलते हुए दिख रहा है और सी_सी कैमरा भी दिखाई दे रहा है।

एक दो घर दिखाई दे रहा है।

और आदमी बैठने वाला भी दिख रहा है।

और तेबल भी दिखाई दे रहे है।

एक होतेल दिखाई दे रहे हैं वहां पे बहोत सराफ स्वीट्स दिखाई दे रहा --

के अंदर में एक डेस्क बेंच दिख रहा है।

ज्यादा आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं।

यह आगे वाला आदमी जो उसका फेस लोग दिखाई नहीं दे रहा है।

और एक बोर्ड जैसा सा दिख रहा है और वहां पे --

साइड का वायर लोग भी दिख रहा है।

हमें बहोत ज्यादा पेड़ लोग दिखाई दे रहा है।

और वहां में आदमी जो चलने वाला दिख रहा है।

यहां पे कुछ लिखा हुआ में देख रहे।

और वायर लोग दिखाई दे रहा है।

हॉल में कुछ गिरा हुआ है।